और ये खुल्ला एरिया है।

यह द्र्स्य एक हॉल का है और हॉल में आपको कुछ बेंच और कुछ कुर्सियां नजर आ रहे हैं। जिनपे पांच छे लोग बैठे हुए हैं।

ब्रश का और बोहोत ही खूबसूरत एक सूरज की तस्वीर है। ये खुल्ला मैदान है बिलकुल।

ये फोटो आपको नजर आ रही है। इसमें एक बिल्डिंग नजर आ रही होंगी और आपको ऊपर आसमान नजर आ रहा होगा सफ़ेद बोहोत ही प्यारे बादल नजर आ रहे हैं इसमें।

और ये वो लोकल एरिया का ही फोटो है।

ये एक टायर की दुकान है जोकि आपको सामने बैनर नजर आ रहा होगा सीएट का और यहाँ पर बहोत बड़े-बड़े ट्रक और ट्रैक्टर के टायर नजर आ रहे है।

यह तस्वीर एक हेयर सलून की है और जिसमे आपको नजर आ रहा है। एक नाई और चारो तरफ शीशे लगे हुए हैं।

और कुर्सियां सजाई हुई है और सलून में ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेविंग के प्रोडट्स रखे हुए हैं।

और कुछ मिरर लगे हुए हैं जिसपे ओ मशीन पे बैठे हुए कुछ और --